एक बत्तख पानी पी रहा है और एक बत्तख--

जिनका घर ये है लाइटें भी लगी हुई हैं।

गोल गोल कटिंग है पौधों की और झूले भी लगे हुए हैं।

यह मंदिर खाटू श्याम बाबा का है।

एक वीर कवप कूलर ए_सी लगी हुए हैं।

फोटो के अंदर बहुत सारी लाइटें भी जल रही--

कपड़े ले रहे हैं। सब लोग इधर उधर टहल रहे हैं।

कुछ तंबू भी लगे हुए हैं।

फोटो में देवी मां की मु।

राधा कृष्णा जी की फोटो र--

वो किसी हवाई अड्डे की है।

फूल भी लगे हुए हैं।

एक साइड में गाड़ी भी खड़ी है एक कार भी है।

बहुत अच्छा सुंदर सा एक व्यू है।

घास भी लगी है और पत्थर से टाइल वाइल भी बनी है।